दिखाई दे रही हैं रोड की फुटपाथ पर पिले और लाल टाइल्स लगे हुए हैं खम्बे भी दिखाई दे रहे हैं जिनपर बिजली के तार लटके हुए हैं।

एक्सरसाइज करने वाले रिंग टंगे दिखाई दे रहे है। बीचोबीच दो छड़ एक रस्सी पड़ी दिखाई दे रही है। एक मुक्का मारने वाला स्थम्ब दिखाई दे रहे है। ऊपर का छत काला सा नजर --

नजर आ रहा है मोरपंख जैसा एक पंटिंग लगा हुआ है तिरंगा दिख रहा है लाल से कलर का हम्म सी-डी उमा स्टैंड बना हुआ है काले कलर का बोर्ड लगा हुआ है नीचे फर्श का कलर सफ़ेद दिखाई दे रहा है।

फोटो में न्हावेली बुक डेपो का स्टोर दिखाई दे रहा है जिसमे न्हावेली लाल पिले रंग से लिखा नजर आ रहा है।